अ सब एक जैसे ही प्रोजेक्ट बना रहे है और सब एक दूसरे का मदद कर रहे है तो मुझे तो बस यही दिखा।

ये कोई जिम का पिक्चर है जहाँ पर एक लरका अपना सेल्फी डाला है।

और अंदर शायद कोई है तो दो लोग वेट कर रहे हैं अपनेएए बारी का अ उसमें से एक आदमी के हाथ में हेलमेट है।

ये कृष्ण और अअ राधे का एक अ --

और जो भी कपड़े जो ठंडे में यूज होते हैं अ यहाँ पर रखे हुए हैं बहुत अलग अलग है।

ये एक खाली स्टेडियम दिख रहा है मुझे अ --

जो आसमान है वो अम् पूरा ब्लू दिख रहा है।

अअअ तो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है कुछ देर में ही जहाँ पर रेड कलर के और --

अ गाड़ी रखा हुआ है टू व्हीलर फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर --

ये एक स्टेज है जहाँ अ कोई प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर अ बहुत सारे --

स्टूडेंट बैठे हुए हैं कुछ डांसर भी दिश रहे हैं मुझे एक अ अअ लेडीज दिख रही है जोकि एंकरिंग कर रही है।

अ कुछ लेडीज नीचे बैठ के अपनी सब्जियाँ भाजियाँ बेच रही है कुछ साइड में दुकान भी है और कुछ अ आ --

एक औरत मास्क पहने हुए है बाजार आई हुई है।

तीन आदमी वहाँ पर अप कपरे धोके एक हैंगर है वहाँ पर रख रहे हैं।

ये मुझे कोई वास्त्री दिख रहा है जहाँ बहुत बरे बरे वाशिंग मशीन है।

और कुछ दुकान भी लगा के रखे हैं अ कुछ आदमियों ने --

यहाँ कुछ मंत्रिया आए हुए हैं लगता है चुनाव के लिए या कोई रैली निकली हुई है जहाँ की --

कर अ कर्मचारी है और --

ये एक खेल का मैदान दिख रहा है जहाँ पीछे बहुत हरियाली है कुछ लड़के लड़कियाँ स्कूल के --

कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं वहाँ पर अ एक लेडीज है लगता है वो उनकी टीचर है जो उनको पता रही है।

और यहाँ सामने हरियाली दिख रही है पीछे अ --

अ कुछ आ पूजा भी कर रहे हैं यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है।

बाहर में पानी के बोतल रखे हुए हैं ये डिस्पोजल कन्फेशनरी का दुकान दिख रहा है मुझे --

यहाँ मुझे एक ह बड़ा सा होडिंग दिख रहा है जोकि ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल्स का होडिंग है अ जिसपे अ --

जोकि टॉप में है बिल्डिंग के टॉप में --

सेलो टेप है फेविकोल है अअम --

गोदाम जैसा है जो कुछ दिख रहा है आसपास बहुत ज्यादा ही समान है।

यहाँ पंडाल जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे सटेबल चेयर लगे हुए हैं बीच में --

पैन लगे हुए है टेबल चेयर्स पे कुछ पानी के बोतल्स है।

एैं पिक्चर दिख रहा है मुझे जहाँ पर जिम के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं पीछे कुछ लड़के --

अपना चीमिंग करे दो लड़के सेल्फी ले रहे हैं।

औऔर पीछे वर्कआउट का सारा सामान रखा हुआ है ।

ये एक इंडियन रेल का रेलगारी है जोकि खरा हुआ है इश्ट अपना रेलवे लाइन पर --

अ स्विमिंग पूल का पानी ब्लू कलर का दिख रहा है आसपास कोई दिख नहीं रहा है औऔर --

कंप्यूटर रखा हुआ है कीबोर्ड रखा हुआ है सी_पी_यू रखा हुआ है कुछ रोल टाइप का रखा हुआ है डेस्क बना हुआ है।

ये एक राशन का दुकान जैसा दिख रहा है बाहर बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

ये एक सैलून या पार्लर है जहाँ पर अ दो चेयर्ससस रखे हुए हैं।

दुकान टाइप का दिख रहा है यहाँ पर कुछ विवो के मोबाइल सेट रखे हुए हैं।

अअअ कुछ कीपेड फोन भी रखे हुए हैं।

आते जाते हुए देख रहे हैं औऔर आसपास और भी दुकान है छोटे छोटे --

यहाँ पर अ कुरकुरे दिख रहे है मुझे अ --

दिख रहे है कुछ कुछ लोग प फेस पे मास्क लगाए हुए हैं बीच में माँ दुर्गा साइड में --

ये एख चर्च या मंदिर टाइप का कुछ दिख रहा है उसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ है सामने एक पेड़ है जिस पे लाइटिंग की हुई है आसपास मैं भी लाई --

है यहाँ जोकि मुझे लगता है कोई गैरेज है और बड़ा सा एक बिल्डिंग है।

अ एक बड़ा सा घर ही है औऔर आससस पाससस --

कुछ कबर्ड टाइप के बने हुए हैं सामने एक कंप्यूटर है।

यहां कुछ ये पीछे एक उच्च विद्यालय टाइप का कुछ दिख रहा है आसपास में कुछ--

टीचर है जो की मास्क पेहने हुए है ये लोग का कोई कैंप चला रहे जैसे की फ्री रुरल हेल्थ कैंप चल रहा हैं।

अ श्टेज बना हुआ है एक अ म्म आसपास लाइटिंग से सजाया हुआ है।

यहां सामने मुझे एक बड़ा सा देख रहा है जहां पर खाने का बुफे लगा हुआ है शायद कुछ फलस भी दिख रहे हैं।

यहाँ एक इशटेज बना हुआ है एै जहाँ पर डांस प्रोग्राम हो रहा है।

पास कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं बहुत सारे लाइटिंग भी दिख रहा है यहाँ पर अ --